एक टेबल दिखाई दे रही है जिसपे एक पानी का जग दिखाई दे रहा है जो प्लास्टिक का बना हुआ है।

दीवार पे कुछ बड़े बड़े पोस्टर भी दिखाई दे रहे हैं जिसके अंदर कुछ नाम भी लिखे हुए हैं।

एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है एक पानी का कैंपर भी दिखाई दे रहा है कुछ प्लास्टिक की खुर्सियां भी दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक व्हाइट कलर का बड़ा सा का पोस्टर दिखाई दे रहा है जिसप कुछ रेड कलर में नाम भी दिखाई दे रही है।

जाली दिखाई दे रही है जो लोह की बनी हुई है।

घर भी दिखाई दे रहा है जिसके आगे कुछ मोटरसाइकिल और स्कूटी दिखाई दे रही है एक बड़ा सा पोस्टर भी दिखाई दे रहा है।

कुछ मोटरसाइकिलें भी दिखाई दे रही है।